बीच की तरफ बहोत सारे पेड़-पौधे हैं आसमान में सनसेट भी दिख रहा हैं और बहोत सारा कलर भी उसमें दिख रहा हैं जैसे कि ऑरेंज और ग्रीन और व्हाइट कलर का स्काई हैं।

मॉल के दाहिने साइड में एक डेस्क हैं ब्लैक कलर के और बीचो बीच एक वाइट कलर का बोर्ड हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ हैं साइड में फ्रेम हैं और उसके अंदर में कोर्स लिखे हुए हैं।